किसी मार्केट बाजार है टाउन में स्थित स्टेट बैंक का शाखा कार्यालय जो टूट-फूटा लग रहा है ऊपर टिन का छप्पर --

जहाॅं पे नीचे कारपेट बिछाए गए है अगल -बगल लोग खड़े हैं और बच्चो का उत्साह बढ़ा रहे हैं। बच्चें अपने रंग -बिरंगे पुस्तकों प्रस्तुति दे रहे है|

बच्चे जाएंगे बच्चे मेला में घूम रहे है अगल-बगल सुधा के दुकान है ज्यादा बड़ा पेड़ भी है और नाम से गेट भी है इससे लोग अंदर जाते --

अंदर एक मौलवी शायद दुकान में बैठे हुए हैं और बाहर तीन कस्टमर दवाई लेने के लिए खड़े हैं बगल में एक आधा-अधूरा मकान है और एक टबेल भी लगे है दवाई मिलती है।

यह एक खूबसूरत पार्क है।

और ना नाव नदी के किनारे पड़ी है लकड़ी का --